एक मकान में एक मकान दिखाई दे रहा है --

पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहा हैं कुछ दुरी पर कुछ मकान भी दिखाई दे रहा हैं ऊपर आसमान भी नीला दिखाई दे रहा है तालाब के किनारे कुछ भैंसे बंधी हुई दिखाई दे रही हैं ।

एक छत दिखाई दे रहा है छत के नीचे एक रेत का ढेर लगा हुआ दिखाई दे रहा है रेत में तीन लड़के --

गाना गाते हुए दिखाई दे रहे है एक लेडिज हाथ मे गीटार लिए हुए बैठे हुए दिखाई दे रही है।

टेबल पंखे रखे हुए दिखाई दे रहे है और एक दुकान पर ए वन एन जे बी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है जिसके पास स्टूल रखा हुआ दिखाई दे रहा है इस स्टूल के पास कुछ बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

नीले कलर में लगे दिखाई दे रहे है हॉल में रेड कलर के पर्दे लगे दिखाई दे रहे हैं स्टेज में भी रेड कलर के पर्दे दिखाई दे रहे हैं हॉल में रंग-बिरंगे लाइटें लगी दिखाई दे रही --

एक बड़ा सा पार्क दिखाई दे रहा है पार्क में काफी सारे पेड़-पौधे लगे दिखाई दे रहे है कुछ शो पीस पौधे भी दिखाई दे रहे है कुछ गेंदा के --

एक बहोत बढ़ा डैम दिखाई दे रहा है डैम से ऊपर पानी कूदता हुआ दिखाई दे रहा है पानी --

मजदूर काम करते हुए भी दिखाई दे रहे कुछ दूरी पर बड़े-बड़े मकाने दिखाई दे रहे बिल्डिंगे दिखाई दे रही।

पहाड़ दिखाई दे रहे पहाड़ के बीचो-बिच एक तालाब भरा दिखाई दे रहा है | तालाब का पानी हरा दिखाई दे रहा है कुछ पत्थर पड़े हुए दिखई दे रहे ऊपर आसमान --

लड़का बैठा हुआ दिखाई दे रहा है जो कुछ फाइलों मे लिखता हुआ दिखाई दे रहा है | काउंटर पे फाइल पड़ी दिखाई दे रही है ऊपर लाइट लगी दिखाई दे रही पंखा लगा दिखाई दे रहा है | ए.सी. --